दुकान है दुकान में बहुत सारे सामान रखे हैं बिस्किट का शैम्पू का गुटका का सुपारी टॉफ़ीयाँ रखीं कुरकुरे रखे हैं बहोत सारे डिब्बे रखे हैं रेड कलर दिख रहा है।

आउटसाइड पेड़-पौधे लगे हुए है मकान बना हुआ है स्कूटीयां --

पहाड़ दिख रही है पहाड़ से पानी बह रहा है व्हाइट कलर ब्लैक कलर पेड़-पौधे हैं नीले कलर के --